एक अ बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है जहां पर नाव दिखाई दे रही है और नाविक जो है उस नाव को ले के जाते हुए दिख रहे हैं। दो नाविक वहाँ पर हैं कुछ सामान भी नाव के ऊपर रखा गया है।